यहाँ पे रेड व्हाइट कलर के सोफे हैं और अलमारी है जो कांच लगे हुए हैं बहोत ही सुंदर डिजाइन की किए हुए--

और दो लोग यहां पे खड़े हैं जो ऐहरसे काट रहे है कैंची से और अंदर भी कुछ लोग है जो उनकी फोटो खेंच रहे।

और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है दुकान के अंदर चार पांच पुतले हैं।

यहां कपड़े की दुकान है यहां पे कपड़े और मिलते हैं एक साइड में गिफ्ट भी रख रखे हैं।

यह एक पोस्टर बना हुआ है यहां पे रेड कलर की चटाई बिछाई हुई है रेड कलर का पेंट किया हुआ है।

में बच्चे आते हैं और बड़े बूढ़े आते हैं जो अपने फिट अपने आप को फिट रखने के लिए आते हैं और अपने स्पीड बढ़ाने के लिए आते है।

ताकि यहां भीड़ न हो और एक बाइक पे खड़ा हुआ हुआ है।

यह भाटियों को रिपेयरिंग है यहां पे हीरो होंडा बजाज टीवी ए_सी एक्टिवा स्कूटी के सभी --

जो बस से उतर रहे हैं और चढ़ रहे--

यह शादी का प्रोग्राम है यहां के लोग जो है स्टेज पे बैठे हैं।

और पोस्टर भी लगे हुए हैं गेट ब्लैक कलर का खुला हुआ है और यहां पे कोई गाड़ी या बंगला नहीं है आसपास।

यहां अलग-अलग स्नान घर अलग-अलग टोंटीयाँ लगी हुई है और अलग-अलग वॉश बेसिन लगे हुए है।

यह एक लाइट जली हुई है यहां पे यह लाइट का शॉप है यहां पे पंखे और चार्जर भी मिलता है यहां इलेक्ट्रिक सामान मिलता है।

यहां पे बेड भी दे रखे हैं बाहर से आने वाले मुसाफिर यहां रुक सकते हैं।